एक वायुयान होता है जिसमें लोग यहॉं से दूसरे देश में जाने के लिए यात्रा करते हैं।

रेस्टोरेंट है यहॉं पर लोग ऊपर बैठ कर भी खाना-खा सकते हैं और --

पर यह एच.पी. इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ्रेमंसी नाम से है बिल्डिंग बनी हुई है इस बिल्डिंग में --

यह एक सी.एन.जी. गैस की सी.एन.जी. गैस की पेट्रोल पंप है जहाँ पर सी.एन.जी. मिलती है।

भी यह एक इलेक्ट्रो आई.टी.आई. कॉलेज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताया एंड समझाया जाता है।

ये एक पार्क ये एक बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और बिल्डिंग्स के आस-पास कुछ कुछ घास खड़ी हुई है। यह घास में --